एक मंदिर जैसा भी कुछ है बहुत सारे पौधे भोई लगे हुए हैं साइड में एक छोटा सा टी सेट भी है।